सामने पिक्चर में कोई ऑफिस दिख रहा है।

सामने एक दृश्य है अह जिसमें सैंटा बने हुए हैं और क्रिसमस का कोई फंक्शन हो रहा है।

बच्चों का स्कूल का बच्चे हैं।

सामने पीछे भी एक घर है घर में फंक्शन कर रहे है कुछ लोग और इंस्ट्रक्शन दे रहे है।

बलून से रेड एंड येलो बलूंस से डेकोरेशन हो रहा है चेयर्स पड़ी है।

इस पिक्चर में एक अ कार्यालय दिख रहा है रजिस्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन का सेंटर है।

आ शोकेस बने हुए हैं उसमें सामान पड़ा है।

अहं स्कूल का कैंप लगा हुआ है टेंट लगे हुए हैं बच्चे बैठे हैं।

ये टेबल पे बहोत सारा सामान पड़ा है।

केक और पेस्ट्रीज के स दिख रही है बाहर बोर्ड लगा हुआ है बाहर एक बाईसाईकिल खड़ी है शॉप की।

ये सामने दो बिल्डिंग का एक बार बीयर बार दिख रहा है।

एक एक पौधा लगा हुआ है बीचमे एक अ लाइट लगी हुयी है रोड लाइट --

सामने चित्र में ये बिल्डिंग है उस बंधन बैंक --

यहां पे सर्विस की जाती है सामानों की।

जहां पे बहुत बड़ा कारखाना बना हुआ है।

डेकोरेशन है रात का दृश्य है।